बहुत सारा झंडा दिख रहा है और धागा जो कि बड़ा मंदिर से ला के छोटा मंदिर में बांधा गया है।

ब्लैक कलर के जींस पहने हुए हैं नीचे में और तीनों के हाथ में बुक है।

उसके आगे एक टेबल रखा हुआ है उसमें लाइट जल रहा है।

यह एक नर्सरी का तस्वीर है। जिसमें कि एक लेडिस एक जेंट्स नजर आ रहे--

कुछ बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हैं जोकि व्हाइट और पीला कलर से पेंट किए गए हैं।

इसके ऊपर नारंगी कलर के साड़ी टंगे हुए है।

सड़क बनी हुई है और ब्लैक कलर के कुर्सी नजर आ रहे हैं और एक बाइक नजर आ रहे हैं।

टंगे हुए हैं और कुछ बड़े बड़े पौधे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर मे एक घर नजर आ रहे है जोकि बाहर मे लाल गुलाबी हरा से पेंट किये गए है।

एक छोटा सा शिवलिंग है जिसमें की पूजा किया गया है।

ये एक दुकान की तस्वीर है जो की कॉफ़ी दुकान है।

बहुत सारे नीचे लाइट सजाए गए हैं जैसे पीला गुलाबी और हरा।

उसके पीछे ब्लू कलर का शटर लगा हुआ है उसके बगल में ब्लू कलर का पर्दा दिख रहा है।

तो हाथी का पुतला बना हुआ दिख रहा है उसके पीठ पे लाल कलर का कपड़ा ढका हुआ है।

वृक्ष लगाए गए हैं वह भी छोटे-छोटे हैं और दो मोटे-मोटे खंबे दिख रहे हैं।

एक जेंट्स खड़े हैं और छे लेडिस और तीन जेंट्स बैठे हुए है।

लेडिस खड़ी है जोकि बाबू है। उसका गोद में और उसके आगे एक जेंट्स खड़े हैं जोकि हरा और ब्लैक शर्ट पहने हुए हैं।

कि अगल बगल हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

चार व्हाइट कलर और दो ब्लैक कलर के हैं और सामने एक आदमी खड़ा है।

यह एक चाँदी दुकान की तस्वीर है।

चांदी का दिया बड़े बड़े बने हुए रखे गए है।

उसके ऊपर दो खिड़की एक बड़े गेट नजर आ रहे हैं और घर को व्हाइट और लाल कलर से पेंट किया गया है।

यह कैरेट में बहोत सारे टमाटर दिख रहे हैं।